जैसे की गेंदा है और चमेली हैं।

जो की जिम मे बहुत सारे बॉडी करने का है जो की --

यह एक सा सौंदर्य है।

कुछ नाव तो जा रहे हैं समुद्र के उधर।

बहुत तरह-तरह की टी शर्ट है यहां पर।